सफेद कलर का शर्ट पहना एक लड़का दिखाई दे रहा है |

उस पे हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहे --

इसमें मिट्टी पड़ी दिखाई दे रही है मिट्टी का कलर लाल दिखाई दे रहा है |

डैम का इ सब पानी का कलर सफेद दिखाई दे रहा है |